लोग बैठे हुए है एक नाँव वाला और चार लड़कियां बैठी हुई है जो नाव को को पार करा रही है और बहु --

उलटे होके लेटे हुए है उनके हाथ में अंगुठियाँ अंगुठियाँ पेहनी है और घड़ी पेहनी है पी है और उनके अ उ उ--

खड़े है चश्मा लगाए है लाल कलर के कपड़े पहने हुए है और फोटो के आजू - बाजू वाइट कलर है और ऊपर --

इस इमेज मे एक लम्बी सड़क दिखई दे रही है और आसमान मे तीन कलर कलर दिखाई दे रहै है और--

फव्वारों के बिच एक साइड बहुत सारे पेड़ - पौधे लगाए गये है और --

आ पेड़-पौधे लगे हुए है है और ऊपर थोड़े-थोड़े बादल छाए हुए है।